और एक घर है जिसका गेट खुला हुआ--

बड़ा सा बैंच और चेयर लगा हुआ हैं आस पास घरे है पेड़ पौधे हैं चारों तरफ हरियाली--

जहां अ सामने बड़ा सा ड्रा रखा हुआ है आस-पास में चेयर लगे हुए हैं बड़ सा रूम है।

पर घर जैसे बना हुआ है इस पर बहुत सारे लोग बैठकर नाव पर तैरने का मजा ले रहे--